और यहाँ पर एक दुकान है और यह बैगों की दुकान है यह दुकान काफी बड़ी है और काफी बढ़िया बनी हुई है यहाँ पर सभी प्रकार के बैग मिल जाते हैं और ये बैग काफी बढ़िया लग रहे --